और एक ए मालीन है जो कि फूलों में प पानी पटा रही है और--

जो घुमने के साथ-साथ फोटो भी घींच रहे है और यहाँ पर एक हरा-सा पेड़ है बहुत बड़ा जिसके नीचे अ एक कुर्सी रख--

यह एक चित्र कला आरटिंग का परीक्षा लग रहा है की हो रहा है। यहां पर पाँच छै से ज्यादा लड़के बैठकर हस्त्र--

यह जोकी कुछ स्टीकर सा है और ये हारा और लाल कलर का है उसके बगल मे एक स्कूटी लगा हुआ है गेट के जस्ट सामने एक बड़ा-सा बिल्डिंग है।

बगल मे एक कम्मल का फूल रखा हुआ है और मछली पालन की है और ये डेकोरैशन इसका बहुत अच्छा है व्हाइट ब्लू ब्लैक मे सजाया गया है।

इ एगो बहुत खुनसूरत जगह का है जहां पर रास्ता बनाया हुआ है। रास्ता के नीचे से बनान--

पिलर के जस्ट बगल मे ही एक बहुत बड़ा पेड़ है पेड़ के बगल मे एक रास्ता है जो की बहोत अच्छा दिख रहा है।